और लेडिज भी उस साइड में भी बैठी हुई है बाइक भी दिखाई दे रही हैं।

गमले में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हो रखे हैं मोर की फोटो दिखाई दे रही है।

और चॉकलेट रंग का इसमें बीच में कॉन्बिनेशन है साइड में व्हाइट कलर का है और उसके साइड में ग्रे कलर का कांबिनेशन पैंट का रखा बहोत अच्छा दिख रहा ये--

इसमें आप देख सकते हो दो स्कूटी दिखाई दे रही है और एक बाइक दिखाई दे रही है बुलेट ।

इसमें हरा भरा एरिया दिखाई दे रहा है नीचे बिल्ली दिखाई दे रहे हैं बंदर भी दिखाई दे रहे हैं।

साइड में भी कच्चा एरिया है सा अ झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

पीली ग्रीन और रेड कलर की माला सी दिखाई दे रही है डेकोरेट कर रखा है जिससे।

आ के पाड़ दिखाई दे रहे हैं घास फूस दिखाई दे रही है।

पक्की में है ए और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और झाड़ियां भी दिखाई दे रही है कच्चा एरिया भी दिखाई दे रहा है कुछ हमें--

इसमें सभी योगा करते दिखाई दे रहे हैं लेडीज जेंट्स सब दिखाई दे रहे हैं इसमें के बच्चे--

और लैपटॉप से वो कनेक्ट है दो मार्कर दिखाई दे रखे हैं रेड और ब्लैक मार्केट दिखाई दे रहा है हमें।

घर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कपड़े सुख रहे हैं तार पर बंद कर--

शाम की फोटो खींच रखी है सूरज ढलता दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहे खंभे दिखाई दे रहे है।

और पीछे इसमें टीटली फॉर्म मे कुछ डिजाइन बना रखा है साइड मे किसी चीज की मूर्ति है वो साफ़ दिखाई नहीं देरी है।

जोकि उनके डेकोरेट कर रखा एक टेबल है जिसमें ऑरेंज और स्काई ब्लू कलर में सिल्वर कलर के कुछ रख रखा है एक आदमी ने एक हाथ में पर्ची पकड़ी हुई है।